यहां पे लॉजिस्टिक की या फिर उत्पादन संबंधी कार्य होता है।

इसमें एक स्टोरेज यूनिट दिखाई गई है जिसके अंदर आप अपना सामान रख सकते हैं।

यहां पे आप देख सकते हैं की फूलों से बनी माला टंगी हुई है।

ब्लैंकेट वगैरा भी डले हुए हैं बेड के ऊपर --

जिनका प्रयोग करके आप छत पे जा सकते हैं।